और काफी गाड़ियां हैं जो पार्क हुई है इसके सामने वो नजर आ रही है।

और भी कई सामग्री रखी है इसमें पानी की बॉटल है।

इस तस्वीर में सामने केनरा बैंक है और केनरा बैंक के सामने दो गाड़ियां खड़ी है और दो कुत्ते खड़े है।

और बाग के चारों तरफ हरियाली है जंगल नुमा दृश्य है पूरा।

और पानी के ऊपर एक ब्रिज जैसा दिख रहा है जोकि लोहे का है और ग्रिल वगैरा दिख रही है।

और बहुत बड़े बड़े चटान है यहाँ पर बड़े बड़े ब्रिक्ष भी है और उनके बीच में से --

इस तस्वीर में एस_बी_आई का एटीएम दिख रहा है।

और ऊपर जो झालर लगी है वो गुलाबी और सफेद फूलों की है।

इस तस्वीर में जल दिख रहा है जल हरे रंग का दिख रहा है पीछे हरे हरे जंगल दिख रहे हैं।

और बगल में एक पेड़ है जो काफी मोटा सा है।

और बगल में लाल रंग का छोटी सी एक दीवाल है जो लाल रंग की पुती हुई है।

और दो चार व्यक्ति हैं सामने खड़े हैं पीछे एक--

और कुछ छोटे छोटे पोस्टर है जिसमें उनका नाम और प्राइस लिखा हैं।

गार्डन है और गार्डन के किनारे बैठने के लिए सीट लगी हुई है।

और पा गार्डन पूरी तरीके से पेड़ों से घेरा हुआ है।

रात की तस्वीर है स्ट्रीट लाइट जल रहा है।

एक नदी के ऊपर बना है और यहां पर बहोत सारे छोटे छोटे पिलर बने हुए हैं।

और आगे की ओर एक काउंटर हैं जहां लिखा हैं पॉप कॉर्नर ।

इस तस्वीर में बड़ी सी बिल्डिंग है जो की सफेद रंग की है।

और एक बड़ा बोर्ड लगा है सामने जिस पर लिखा है म्यूजिक मस--

और काउंटर लाल रंग के हैं सफेद रंग की दीवालें हैं लाल रंग के पर्दे हैं और ऐ_सी भी लगा हुआ है।

जिनके ऊपर हरे रंग की परत है पत्तेदार है।

टेबल पर ब्लैक कलर का एक ट्रे है ट्रे में दो कप है जिनमें काफीस है।

और दो नान है नान के ऊपर कुछ व्हाइट और ग्रीन सा गार्निश है।

जो कि घर बनाने की कामों में यूज होने वाला सामान है।

यह तस्वीर एक गार्डन की है जिसमें--

और एक फिसल पट्टी है जिस पर एक बच्चा फिसल रहा है।

जोकि एक बड़ा सा कंपलेक्स है जिसके अंदर बहोत सारी दुकाने हैं।

पेड़ों को पौधों को पानी देने के लिए--

जहा पर सफेद रंग की चादर या कार्पेट पर--